जिसमें कुछ टम्पू हैं और कुछ पिक अप खड़ी हैं।

इसपे जो ऊपर रखें गद्दे हैं और इनमें से कुछ बेड ऊपर नीचे रखे हैं जिनका रंग मैहरूम है और इसके आस पास कुछ तरह तरह के मेज हैं।

यह सड़क बहोत लंबी है और ये जंगल बहोत घना है।

इन कारों का रंग सफेद है और इनके टायर काले हैं और इनकी लाइट लाल है।

और एक अपने मोटरसाइकिल बाइक पर बैठा है।

और एक टावर है और एक लाल रंग की बस है।